और बच्चों के टॉयज भी दिख रहे हैं।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

एक बोर्ड नज़र आ रहा है जिसपे सीने पोलीश लिखा हुआ हैं मुझे यहां पे कुछ पिलर्स भी दिखाई दे रहे है और हरी भरी घास भी --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

मुझे यहां पे टेबल के ऊपर एक कंप्यूटर और माउस भी नजर आ रहा है।

और एक पेंसिल और अह कागज भी दिखाई दे रहा है हॉल में मुझे बहुत सारी लाइट्स दिख रही हैं और कुछ लोग चेयर्स के ऊपर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

जहां पे दो आदमी कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं मुझे कुछ स्टेयर्स भी यहां पे नज़र आ रही हैं और सोफे और टेबल भी दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ लोग भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहां पे बड़े बड़े पेड़ पौधे और झाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक मिठाई की शॉप नजर आ रही है।

कुछ मछलियों को डब्बे के अंदर रखा है।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

कुछ लोग मुझे घूमते हुए और खड़े हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहां पे--

कॉरिडोर में मुझे लकड़ी के डब्बे दिखाई दे रहे हैं। जिम में स्टूल और चेयर को रखा गया है।

यहां पे मुझे एक पूल नजर आ रहा है जिसमें पानी भरा हैं।